यहाँ पर मुझे बल्ब नजर आ रहे है और बैठे हुए है कुर्सी नज़र आ रही है और यहाँ पर मुझे बहुत सुन्दर स्टेज लग रही है एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

और कुछ पौधे छोटे छोटे नज़र आ रहे है गममो की ईट दिक मतलब दीवाल दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे आसमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर --

--और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही तो वो है मुझे यहाँ पर नदी दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही अच्छी नदी भरी हुई है मतलब तालाब सा उतो समुद्र सा ही समझ लो।